एंड कटिंग सॉल्यूशन का बोर्ड दिखाई दे रहा है सामने एक कार भी खड़ी है।

यहाँ रेस्टोरेंट का नाम हांडी रेस्टोरेंट है। यहाँ टेबल पर फुलदान रखे हुए हैं।

और यहां कुछ झूमर भी टंगे हुए हैं जो मिट्टी से ही बने हुए हैं।

कुछ मिठाइयां भी सामने दिखाई दे रही है।

यहां आस पास में बहोत सारे मंदिरों के--

और इसमें कुछ लोग भी चढ़ रहे हैं।

साबुन रखे हुए हैं साबुन टाइड कंपनी व--

बोर्ड के पा आ ऊपर दो लोग खड़े हुए हैं।

जिसका नाम टेस्ट अबोव ऑल लिखा हुआ है।

सामने एक डायनासोर की तस्वीर है और बीच में एक फाउंटेन भी है।